लाइट एक जल रही है.

एक पोपलेन नजर आ रहा है.

एक सीढी नजर आ रहे हैं उसके आगे.

और टाइल्स लगा हुआ नजर आ रहा हे दिवार मे.

दो कुर्सी नजर आ रहा है एक खिड़की नजर आ रहा --

सामने फूल नजर आ रहे हैं पूरा कमरा नजर आ रहे हैं.

एक रूम नजर आ रहा हे.

कुर्सी नजर आ रहै है.

और शीशा का बना हुआ रैक नजर आ रहे हैं और इधर टेबल नजर आ रहे--

एक लोटा नजर आ रहा है.

एक व्यक्ति पूजा करने से नजर आ रहा है।

दीवार में बनाया हुआ भारत का नक्शा नजर आ रहा है.

पानी गिरते हुए झरना नजर आ रहा है.

और घास वास स--

इसमें लोहा का बनाया हुआ पोल नजर आ रहा हैं।

सामने बुक रखा हुआ है.

कृष्णा पैलेस नजर आ रहा हे लिखा हुआ.

यह पीला कलर का ये जिम करने वाला नजर आ रहा हे.

चेहरा ढका हुआ एक आदमी सामने बैठा नजर आ रहा है.

सामने पत्ता का बोरा नजर आ रहा है.